शॉटफेयर रखे हुई दिखाई दे रहे हैं।

दे रही हैं। लाइट्स दिखाई दे रही है।

इसे बांधा हुआ दिखाई दे रहा है और ये--

और बहुत दूर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कोई स्मृति चिन्ह रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ बैनर लगे हुए है जीसमें मारिया--

और एक लंबी बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

और एक रोड दिख रहा है।